ये ग्रे कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जिसमें एक लड़का जो है जमीन पर पड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

सामने घर में छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है बहुत सारी घास लगी हुई है।

सामने की ओर में एक मैदान पड़ा हुआ है जिसमें टाइल्स लगे हैं बाजु में कुछ बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने की ओर में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए हैं जिसमें --

यहां पे एक लड़की दिखाई दे रही है लड़की ने जो है ब्लैक कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ है और ऊपरी उसकी चोटी दिखाई दे रही है।

वहाँ ब्लैक कलर की बाइक दिखाई दे रहियो ऊपर के साइड में आसमान है।

यहाँ पे एक बैनर्स पड़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सुधा।

यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गयी है बिल्डिंग के ऊपर जो खंबा दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का कलर होता गया है। यहाँ पे एक लोहे का खम्भा भी दिखाई दे रहा है।

बकरी का कलर ब्लैक और येलो है ऊपर की साइड में नीला आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें सूरज निकला हुआ है।

और ऊ पीछे की साइड में एक बैनर लगा गया है जिसमे काफी प्रकार के चित्र बने है और पीछे के साथ में एक पर्दा है जो ब्लू कलर के --

यहाँ आस-पास में कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जिसमें से कुछ बिल्डिंग आधी अधूरी है और कुछ बिल्डिंग बन चुकी हैं।

यहां पे दो लॉक लगाए गए हैं ऊपर की साइड में दो बैनर्स टंगे है जिसपे लिखा गया कॉफी हाउस ।

और नीचे की साइड में कुछ लाइट्स लगाई गई हैं और ऊपर के साइड में एक खंबा लगाया गया है जिसमें लाइट्स लगाई गई हैं।